कार दिख रहा है और एक व्यक्ति खड़े हुए हैं।

और अच्छा से डेकोरेट किया गया हैं जहाँ पे--

जहां पे हर व्यक्ति होटल पे आ रहे हैं और यह होटल का नाम--

कांच का लगा हुआ है जहां पे मार्टस इसमें मार्टस पी_वी_आर लिखा हुआ है।

मैं अपने दुआ प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं।

पीला कलर की साड़ी पहने हुए एक लेडीज बैठी हुई है।

इस चित्र को देखकर यह लग रहा है कि यह एक--

इस चित्र को देखकर यह लग रहा है कि यह एक कैफे है।

यहां पे हर व्यक्ति जा रहे हैं और होटल के बाहर पे रेड कलर का--

बगीचा है जहां पे अनेक अनेक फ्लावर हैं पौधे लगाए गए हैं।

अपने-अपने जगह पे खड़े हुए है और एक बुजुर्ग बैठे हुए है।